दीवार है जो की काफी बड़ी दीवार है ऊंची है पत्थरों की ये सारी पत्थर की दीवार है | दीवार पे कुछ घास भी उगी हुए है और पत्थर का ही